इस शॉप में हमें एक फ्रेम दिखाई दे रहा है।

जिसमें कि कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

और लकड़ी के बाँस पे बाँस के कुछ --

यहां पर हमें एक ढाबा नजर आ रहा है इस ढाबे के बाहर बहोत सारे--

यहां पर हमे बहोत सारे लोग खडे हुए नज़र आ रहे है।

यहां पर लोहे की जालियां बहोत सारी रखी हुई है।

ए_सी लगा हुआ है और दीवाल पर--

और यहां पर रेड कलर का कारपेट है।

स्काई ब्लू कलर की एक व्हाइट पर्पल और एक प्योर व्हाइट गोल्डन कलर की साड़ी यहाँ पर --

यहां पर हमें एक टीन शेड से बना हुआ गैरेज नजर आ रहा है और इसमें बहोत सारी--

रिपेयरिंग के लिए खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर टीनशेड पे--

दिखाई पड़ रहा है और इसी के आस पास हरे भरे पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें की छोटे बच्चों के कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं।